नीचे देखे तो अच्छे तरह और वि विप्रतिष्ठित किया गया है हम देखे तो यह सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख सकते --

यहाँ जानवर और सभी लोग मनुष्य भी है और देखे तो ये अच्छा बिल्डिंग और सराउंडिंग भी अच्छा दिख रहा है ये सबसे अच्छा प्लेग्राउंड भी माना जाता है।

उस समय देखे तो क्रिकेट खेलने के लिए बहुत अच्छा है देखे तो यहाँ पेड़ पौधो से वातावरण अच्छा लगता है।

तो हम यह देख सकते है। यहाँ फ्लूड्स आ गया है। सबसे पानी बहुत उंच से भर रहा है। ट्रीज के ऊपर से निचे से जिनको हम देख सकते है। यह जल पार रहा है।

क्युकी यह ग्रीन ग्रास है और पूरा सभी लोग देखे तो है अच्छा प्लेग्राउंड देख सकता है एंड ये बिल्डिंग भी सबसे अच्छा बड़ा है एंड प्लेग्राउंड भी सबसे बड़ा है।

फ्रैंड्स हम देख सकते है। यहा पेड़ पौधे है और हम देखे तो ग्रीनरी ग्रास भी दिख रहा है। एक बिल्डिंग भी अच्छा और पड़ा है और आकाश भी ब-ब्लू कलर है। एंड सरौंडिंग भी क्लीन क-क्लीन है और स्वच्छ है।

दोस्तों आप देख सकते है। ये अच्छा बिल्डिंग है। यहाँ सरौंडिंग्स मे ट्रीस है और देखे तो स्काइ भी अच्छा है अँड सरौंडिंग भी अच्छे तरह दिख रहे है और रोड भी अच्छा है और टाइल्स भी अच्छी तरह बना गया है।